और भी बहुत सारी मशीन रखी हुई है दो आदमी खड़े हुए हैं सामने पोस्टर लगा है।

जो की लोहे का है एक लड़की गेट के पास खड़ी हुई है।

सामने एक मेज है जिसके पास एक डस्टबिन रखा हुआ है एक सीसा भी है एल_सी_डी भी है।

और पीछे लकड़ी के कुछ बक्से बनाए गए हैं जिसके अंदर कुछ दवाइयां रखी हुई है।

जिसमें कोई बाबा दिखाया गया है और कुछ माइक लगे हुए हैं एक कुर्सी भी रखी है।

यहां पर नीचे कुछ थर्माकोली गत्ते लगाए गए हैं।

इस चित्र में हमे यहां पर कोई ऑटो की एजेंसी दिखाई गई है।

एक पेड़ लगा हुआ है कुछ आदमी भी है।

जहां पे एक बाइक वाला खड़ा हुआ है एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

जिसके ऊपर नीला और सफेद रंग का पेंट किया गया है।